बहोत सारी जिंदी और कटी हुई दिखाई दे रही है।

पुल को साफ करते हुए दिख रहे है जिसमें तालाब मे बहुत सारा कचरा दिखाई दे रहा है।

जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रक में से बहोत सारे उतारे गए--

वो टालेज का जो साइज है वो भी खत्म हो चुका है।

सारा पोती खराब हो गया है और सामने जो व्यक्ति देख रहे हैं ये--

यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बलून की दुका ये हमें सामने देख दिख रही है जिसमें बहोत सारे बर्तन --

सब नीला के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है आप सामने की ओर देख सकते है येलो कलर में एक छाता दिखाई दे रहा है।

हां तो दोस्तों आप देख सकते हैं की रिक्शे ड्राइवर ने--

जिसमें बहुत सारे लोगों की जांच की जा रही है।

एक यहा पे चेयर जो बताया गया है आप देख सकते हैं यहां पे एक नर्स खड़ी हुई है जिसमे आप अंदर देख सकते हैं।

सामने की ओर बाइक भी खड़ी हुई है यहां पे आप देख सकते हैं।

यहां पे आप सामने की ओर देख सकते हैं कि--

अ अच्छा स्टेज प्रोग्राम हो रहा है जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों मिलके--

यहां सामने की ओर आप देख पा रहे हैं कि एक जिम है जिम के पास में हि--

और दुकान में देख सकते हैं कितनी ढेर सारी दवाईयां भी पड़ी हुई है आप देख सकते हैं कि--

सामने की ओर आप देख सकते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है उसमें--

ये कितने प्यारे दिख रहे हैं सामने की ओर आप देख सकते हैं कि जो--

यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की ओर एक जो नदी है नदी में कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है। पानी खोलवारीयों नदी --

कि कुछ लोगों गए हैं इधर साइड में और यह देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन बनाई गई है इसमें छत में आप देख सकते हैं।

आप देख सकते हैं रोड कितना प्यारा दृश्य बनाया है सामने की ओर आप देख सकते--

और रेडियम ने जॉइंट काटने के लिए एक मशीन रखी गई है और सामने के ओर आप देख सकते हैं।

सामने की ओर हम देख सकते हैं कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी--

देखिएगा इससे यहां पे कितना मस्त माहौल दी--

एक मेन एक आदमी बैठा है जो कुछ न कुछ अपना कार्य कर रहा है और सामने की ओर भी और दो तीन तरह के आदमी लोग दिख रहे है इसमें देख सकते हो की--

प्यारे प्यारे भी दिखाई दे उसके पास में एक और मशीन पड़ी हुई है क्या पता ओ--

सामने की ओर आप देख सकते हैं की एक कैस्ट्रॉल नाम से जो--

पेट्रोल पंप खोला गया है उसमें कितने प्रकार के झंडे लगाएंगे--

यह सामने की ओर दृश्य देख सकते हैं क्या?

एक लेडिस वहां पे जाती हुई दिखाई दे रही है जिसमें बहुत--

सामने की और आप देख सकते हैं की किचन रूम बनाया गया है। किचन रूम में आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे-प्यारे से --

किचन में खिड़की भी दी गई है जो बहोत अच्छी बात--

सामने की ओर आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे गुब्बारे हमें लग दिख रहे हैं।

एक व्हाइट कलर का गुब्बारा है जिसमें चार रेड कलर के गुब्बारे लगा दिए गए है और एक--